दोस्तो ये एक बैंक का लग रहा है जो काफी अच्छा लग रहा है। एच_डी_एफ_सी बैंक नाम है इसका जो की काफी अच्छा लग रहा है और ये बैंक के ऊपर में भी कुछ-कुछ है जो काफी अच्छा लग रहा है खिड़कियां जो हैं वो भी अच्छी लग रही है इसका कलर भी काफी अच्छा लग रहा है यहां नीचे में शटर लगे हुए हैं।

दोस्तो ये किसी बैंक का सीन लग रहा है जो काफी कुल लग रहा है और ये मेन ब्रांच है जो काफी कूल है एस_बी_आई नाम है इसका वो भी काफी कूल लग रहा है सामने का जो डिज़ाइन है वो भी काफी कूल लग रहा है बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा लग रहा है।

दोस्तो यह किसी बैंक का सीन लग रहा है जो की काफी कुल लग रहा है फेडरल बैंक नाम है इसका जो की काफी कुल लग रहा है। नाम भी कूल है बहुत और जो इसका जो धा डिजाइन है वो भी काफी कुल लग रहा है। वहां पे--

और यहां पे कुछ लोग भी खड़े है जो काफी कुल लग रहे हैं ।

इस साइड से पोस्टर जो है एस_बी_आई ए_टी_एम वो भी कुल लग रहे है ब्लू कलर का बगल में भी एक एस_बी_आई ए_टी_एम है वो भी काफी कुल लग रही है घर का जो है बिल्डिंग का जो ढांचा है वह भी काफी अच्छा लग रही है इसका कलर भी काफी लग रही यहां बाइक भी लगे है जो काफी कुल लग रहे है।

दोस्तो यह किसी बैंक का सीन लग रहा है जो काफी कुल लग रहा है एस_बी_आई बैंक का नाम है इसका जो काफी कुल लग रहा है बैंक का जो ढांचा है वो भी काफी अच्छा लग रहा है और ये अंदर में कुछ एक आदमी लोग हैं और देखिये यहाँ बाहर में बहुत सारी बाइक लगी हुई है।